और बगल में एक अ सी स्टील लगी हुई है ऊपर खिड़की बनी हुई है जो रॉड लगी हुई है।

और एक औरत खड़ी है जो लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। एक टेबल रखा गया है जो नीले रंग का है और ऊपर के साइड पे टाट बिछी ऊपर साइड लगा हुआ है। पेड़-पौधे हैं हरी पत्ती है।

दुकान है जो कपड़ें के दुकान हैं और कुछ खिलोने के दुकान है।

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो सफेद काला कपड़ा पहना हुआ है ऊपर बोर्ड लगी हुई है नीले --

चारों तरफ घरे बनी हुई हैं फिर सफ़ेद और कत्थे रंग की है| बगल में एक पेड़ है हरी पत्ती है सफ़ेद-नीला आसमान है|

और खिड़की लगी हुई है टाट लाल और धब्बे रंग का है।

सारे पेन रखे गए हैं एक बड़ा सा पोस्टर चिपका हुआ है जो पीला है सफ़ेद दीवाल सामने की साइट पे एक दुकान है जो दो लड़के ख --

और पीले रंग का सफेद नीला आसमान है बगल में पेड़-पौधे हरी पत्तियां अंदर के साइड पे गाड़ी खड़ी है।

--है और एक लड़का जो झुक ऊपर साइड पे खड़ा है और ये निचे हरी घास हैं पेड़-पौधे हरे पत्ते सफ़ेद नीला आसमान।